ताला नदी नहर है और न-वे-पंछी है।

कैनडल्स जल रही है उनका कलर है येलोओओ और मिट्टी में है और सामने बच्चे --

पियानो है गाना बजाने वाला है उधर भी तानपूरा है उधर भी ढोलक है एक और ढोलक--

और बाइक के आगे कुछ लिखा है। बाइक में लाईट है। नंबर प्लेट है। कार है। कार के चार टायर है। टैयरो में व्हील हैं।

फ़ूल है माला हैफ्लावर है गुलदस्ते है फ़ूल हैनिचे सजावट है मूर्ति है ।

पूरा का पूरा एरपोर्ट है और मशीने है और प्लेन दिख रहा है।

ये रेलवे है रेलवे स्टेशन है ट्रेन बन रही है इन्सान है ट्रेन के टायर है और भी सामान है। --

रेड एक हे -- हवाईजहाज है उस पे आदमी है कुछ बैग लिए चढ़ रहे है। उस पे और चढ़ रहे है। वो रेड कलर का है। उस पे कुछ लिखा हुआ है।